एक ने पीला कलर का हॉफ शर्ट पहना हुआ है।

सामने एक काउंटर बना हुआ है।

काउंटर के ऊपर एक क्यू_आर कोड रखा हुआ है जो फोन पे का है।

सामने तीन पिलर दिखाई दे रहे है।

बोरे के ऊपर सफेद फूल को रखा गया है।

बाहर में एक ऐ_सी बॉक्स लगा हुआ है।

बिल्डिंग के बगल में एक रोड दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर कुछ प्लेट और एक बोतल रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे आदमी दिखाई दे रही है और कुछ औरत भी।

सामने कुछ पुतले भी रखे हुए हैं।

सामने बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक औरत भी दिखाई दे रही है।

एक आदमी ऊपर में बैठा हुआ है।

यहां पर बहुत बड़ी-बड़ी चट्टाने दिखाई दे रही है।

इसके साइड में बहुत सारे छोटे छोटे झाड़ियां और बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक गाड़ी दिखाई दे रहा है जो सफेद और पीला कलर का है।

सामने चौराहे पर एक आदमी दिखाई दे रहा है।

चर्च के सामने ग्रील लगा हुआ है जो लोहे का है।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

सामने कुछ कुर्सी भी रखी हुई है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ सीढ़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो फोन पे के स्टीकर और एक कागज सटा हुआ हैंजो ग्रीन कलर का है।

यहां पर दो पटरी दिखाई दे रहे हैं।

साइड में ब्लू कलर का तिरपाल रखा हुआ है।

सामने एक मर्द बैठा हुआ है जिसने सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।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

यह एक मंदिर का चित्र है।

यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

एक औरत भी दिखाई दे रही है।

सामने नीचे में कुछ कॉपी रखे हुए हैं।

दुकान का गेट खुला दिखाई दे रहा है।

बगल में एक आदमी खड़ा है जिसने गंजी बना हुआ है जो सफेद कलर का दिखाई दे रहा है ।

यह एक हॉल दिखाई दे रहा है।

साइड में एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

यह एक दुकान का चित्र है।

यहां पर बहुत सारे जींस और शर्ट रखें हुए हैं जो सभी अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दीवाल में कुछ लाइट भी लगी हुई है।

सामने चार आदमी दिखाई दे रहे हैं जो घर का माप कर रहे हैं।

टेबल पर एक भाफ देने वाला मशीन और एक हेलमेट रखा हुआ है।

इसमें हीरा इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।